पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां एक सोफा भी रखे हैं।

और यहां का बाल व्हाइट कलर का है।

और बाहर में एक गाड़ी और घर सब भी दिखाई दे रहे हैं।

वो पीछे दीवार फुल से सजा के है।

ये फोटो में हमको एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट में एक प्लेन है और बहुत सारा आदमी हैं।

एक गाड़ी को ऊपर में लटका के है।

और दोनों मैकेनिक सेम ड्रेस करके है।

ई फोटो में हमको बस स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर बहुत सारा सामान भी रखे हैं।

और पीछे दीवार में बहुत सारा पिक्चर लोग रखे हैं।

और एक बेसिन भी लगा के है।

ये फोटो भी शायद किसी सैलून का है।

यहां में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

इ फोटो में हमको बड़ा बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

और अब बाहर में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां वायर और लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सुन्दर सुंदर पेड़ भी लगाके है।

यहां दूर में एक घर भी दिखाई दे रहा हैं।

इ फोटो में हमको वांचून ओरिया में बनाया जाने वाला एक दिखाई दे रहा है।

यहां इस देश को दो बड़ा गांव से सजा के है।

और चार लोग चश्मा पहन के है और दो लोग ने नहीं पहना है।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

यहां आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

यह सुंदर सुंदर फूल लगा के है और छोटा छोटा पेड़ लगा के है।

इस फोटो में हमको शेम शेम वाला दो घर दिखाई दे रहा है।